यहां पर बहोत सारे लाइटिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा--

सामने एक रोड दिखाई दे रहा है रोड बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा--